यह एक मंदिर है इसमें व्हाइट कलर की पेंट हुई है और मंदिर पे--

फोटो रखा हुआ है वो भी बहोत अच्छी--

प्रकार की दुकानें भी दिखाई दे रहा है और इसके बगल पे--

गाड़ी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और--

यहां एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसमें सात लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे और उसके हाथ पर कोई पुस्तक दिखाई दे रहा है--

बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं और लोहे की खिड़की भी लगी हुई है और भूरी कलर की--

यह किसी रेस्टोरेंट की तरह तरह है जिसमें बहुत सारी चेयर्स है।